पूरे क ढके हुए हैं स्वेटर लगाए ये ठंड से आ रहे हैं जैसे लग रहा है यहां पे कुछ गाड़ियां --

जो यहाँ जॉब करते है और कुछ लोग अपने काम से भी आए है यहाँ दो भईया खड़े है।

ये एक गार्डन है गार्डन में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं हरे भरे हैं।

उसके सिर में लाल कलर का लगा हुआ है और यहां पे कुछ पौधे भी उगाए हैं।